उस कंपाउंड के बगल में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगे है।

कुछ लोग चल रहे हैं और बहुत सारे गाड़ियां पार्क कर कर रखी गई हैं।

एक झंडा भी रखा हुआ है एक डेस्कटॉप भी रखा हुआ है।

और बहुत सारे कार्टूने भी दिख रही है।

उस कमरे में दो काली और लाल रंग की दो कुर्सियां भी रखे हुए है।

और वाइन के सामने कुछ की बोतल भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक बहुत ही लंबा कमरा दिख रहा है जिस पर बहुत सारे फर्नीचर्स है।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

ऊंची ऊंची वॉल खड़ा किया हुआ है उसके बगल पर दो लोग बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक कमरा दिख रहा है।

कंपाउंड के आस पास बहुत सारी बैठने की जगह भी है।

और इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे भी दिख रहे हैं बिल्डिंग के पास में एक गाड़ी भी है।

और कुछ चावल की बोरियां भी रखा हुआ है।

और उन लोगों के पीछे बहुत सारी हिंदू धर्म की भगवान भी दिख रही है।

नाले के बगल में कुछ घास फूस भी है।

इस तस्वीर में मुझे एक दुल्हा और एक दुल्हन दिख रही है।

राइस मिल के बाहर एक लाइट का पोस भी लगाया हुआ है।

उसमें एक बड़ा सा लोहे का गेट भी लगा हुआ है।

बगल के बिल्डिंग पे कुछ कपड़े भी सुखाए हुए हैं।

कॉलेज के साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स बी_बी_ए बी डॉट कॉम पी यू सी ।

और एक आदमी तस्वीर लेता हुआ भी दिख रहा है।